यहां पर सामने ही बॉटल्स पड़ी हुई है।

बोहोत सारी घास भी दिखाई दे रही है साथ ही छोटा सा पानी का तलाब भी हमें दिखाई दे रहा है।

पेड़ पौधे भी पीछे की ओर दिखाई दे रहे साथ में ब्लू आसमान है।

गहरे वाइट रंग का यहां पर आसमान दिखाई दे--

और कुछ झाड़ियां भी नजर आ रही है साथ में एक फ्लैग भी लगा हुआ है।

और टेबल के पिछे हमें एक कुर्सी दिख रही है जो की वाइट कलर की--

इस फोटो में हमें एक मिठाई की शॉप दिख रही है।

लैंप भीं दिखाई दे रहा हैं और साथ में कुछ ब्लैक कलर की खिडकीयों की--

साथ में एक व्हाइट कलर है और यहां पे हमें--

यहां पर हमें बहोत सारी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो की वाइट कलर की है कुछ छत हमें ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे।

यहां पर हमें कुछ ली लोग दिखाई दे रहे--

और ड्रम ब्राऊन येलो कलर का है और येलो कलर का कपड़ा भी लोगों ने पहना हुआ है।

ऑटो येलो कलर के हैं और साथ में ही गाड़ियां--

जो कि हमें ब्लू कलर का है और इस पे--

और सामने ही कुछ लोग खड़े है और येलो कलर का एक और बोर्ड लगा हुआ है।

बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं जो कि ब्राउन कलर के--

रेड कलर की चेयरे अथवा कुछ और भी हमें इसमें पंखा रूपी दिखाई दे रहा है जो की ब्लैक कलर का है।